पिंक एंड रेड केक का दिख रहा है जिसमें हार्ट शेप --

जिससे लग रहा है कि सभी एक दूसरे से बातचीत करते हुए सामान को बेच रहे हैं।

जय हिंद करते हुए दर्शाए जा रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर गार्डेन है।